लिबरे ऑफिस draw में working with objects पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि:
* grids और guide lines प्रयोग करके objects को कैसे स्थित करते हैं
* snap functions को कैसे प्रयोग करते हैं
* lines और arrowheads को कैसे customize करते हैं
आप यह भी सीखेंगे कि: objects को duplicate यानि प्रतिलिपि कैसे बनाते हैं
* objects को कैसे ठीक से resize करते हैं
* ऑब्जेक्ट्स को कैसे वितरित करते हैं
* ऑब्जेक्ट्स को कैसे संयुक्त करते हैं मिलाते हैं घटाते हैं और प्रतिच्छेदित करते हैं
अपने operating system की तरह हम ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 प्रयोग कर रहे हैं
grids क्या होते हैं
*ग्रिड्स ऑब्जेक्ट्स को सही से ड्रा पेज पर स्थित करने में मदद करते हैं
अब routemap file खोलते हैं जो desktop पर सेव की थी
पिछले tutorials में हमने संक्षेप में grids प्रयोग किये थे
अब विस्तार में grids के बारे में सीखते हैं
main menu से view चुनें और grid पर click करें
फिर display grid पर click करें
draw पेज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर dotted lines से भरा है ये grid बनाती हैं
ये grids केवल प्रदर्शन उद्देश्य के लिए हैं ये printed नहीं किये जायेंगे
हम grids के size को customize कर सकते हैं यानि ज़रुरत के अनुसार उन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं
main menu से tools चुनें और options पर click करें
आप options dialog box देखेंगे
libreoffice draw पर click करें और grid चुनें
resolution में निम्न values प्रविष्ट करें:
horizontal – 7 cm
vertical – 5 cm
subdivision grid में spaces की संख्या निश्चित करता है
अब subdivision values प्रविष्ट करते हैं
horizontal – 3
vertical – 4
अब synchronize axes विकल्प को अनचेक रहने दें
ok पर click करें
draw पेज को देखें grid में प्रत्येक box के size को देखें
अब उन spaces को गिनते हैं जो हमने setडिवीज़न में set किये
क्षैतिज स्थिति में 123 spaces हैं और ऊर्ध्वाधर स्थिति में 1234 spaces हैं
अब guides के बारे में सीखते हैं
guides क्या होते हैं
guides objects के किनारों की सहायक लाइनें या विस्तारण होते हैं
जो दिखती हैं जब यह moved होता है
अब guidelines को सक्षम करते हैं
main menu पर जाएँ view चुनें और guides विकल्प चुनें
अब display guides विकल्प पर click करें
main menu से tools पर और options पर click करें
options dialog box दिखता है
बाएं panel से libreoffice draw के आगे छोटे काले त्रिभुज पर click करें view पर click करें
दायें panel से guides when moving चुनें इस तरह से जब objects मूव होते हैं तो आप guides देख सकते हैं
ok पर click करें
अब park को थोड़ा now दायीं तरफ move करते हैं
जब park moved होता है तो object के किनारों की विस्तारण लाइनें दिखती हैं ये guidelines हैं
snap lines क्या होती हैं
snap lines एक क्षेत्र जो परिभाषित है उसमें दो या अधिक objects को स्थित करने में हमारी मदद करती हैं
snap lines और snap points यूज़र द्वारा बनाये जाते हैं
snap lines ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से रन होती हैं और dashed lines की तरह दिखती हैं
आपको snap lines बनाने से पहले snap lines option को सक्षम कर लेना चाहिए
draw पेज पर जाएँ context menu के लिए rightclick करें और snap lines चुनें
अब सारे तीनों विकल्पों पर क्लिक करें:
snap lines visible
snap to snap lines
snap lines to front
snap lines जो हम बनाते हैं अब दिखाई देंगी
अब snap lines प्रयोग करके एक क्षेत्र परिभाषित करते हैं जो नक़्शे के objects को अपने अंदर समाविष्ट करे जैसे की slide में दिखाया गया है
mouse cursor को ऊर्ध्वाधर ruler के ऊपर move करें
mouse के बाएं button को दबाएं
आप देखेंगे कि cursor की shaped अब twosided arrow की तरह हो गयी है
mouse को draw पेज की तरफ खींचें
आप एक dotted line देखेंगे
mouse button को न छोड़ें
बाँयें mouse button को पकड़े हुए dotted line को पेज तक खींचें
अब mouse button छोड़ें
क्या आप line देख सकते हैं
यह वो snap line है
सबसे नीचे की लिमिट बनाने के लिए बस लाइन को पेज में नीचे खीचें
अब उस क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए तीन और snap lines बनाते है जो नक़्शे को अपने अंदर रखे
हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर snap lines बना we हैं
अब आप इन snap lines के साथ objects को स्थित कर सकते हैं
आप अवश्य ही जितनी snap lines चाहते हैं बना सकते हैं
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर snap lines graph पर x और y axes की तरह कार्य करती हैं
इन दो axes में आप objects को ठीक से स्थित कर सकते हैं
आप objects को ठीक से स्थित करने के लिए snap function के साथ grid lines को प्रयोग कर सकते हैं
आप snap to grid भी प्रयोग कर सकते हैं* grid points पर ठीक से object को स्थित करने के लिए
snap to snap lines भी प्रयोग कर सकते हैंsnap line पर object को ठीक से स्थित करने के लिए
snap to page margin भी प्रयोग कर सकते हैंपेज margin पर object को ठीक से स्थित करने के लिए
इस tutorial को रोकें और यह नियत कार्य करें
सारे grid विकल्पों का अन्वेषण करें
जाँचें कि क्या होता है जब आप snap to grid snap lines और page margins करते हैं
add school campus के आगे इस lake के आकार के जैसे ही एक और lake lake जोड़ते हैं
ऐसा करने के लिए duplicate विकल्प प्रयोग करते हैं
अब lake चुनते हैं
main menu पर जाएँ edit चुनें और duplicate पर click करें
duplicate dialog box दिखता है
number of copies में value 1 प्रविष्ट करें और ok पर click करें
lake की प्रतिलिपि बन गयी है
अब lake को खींचते हैं और school के पास लाते हैं
ज़रुरत के अनुसार objects किसी भी नाप में सही से resized किये जा सकते हैं
अब सही नापों को प्रयोग करते हैं और इस slide में दिखाए गए की तरह घर की आकृति को बदलें
अब इसे समान ऊँचाई और चौड़ाई देते हैं और इसके कोनों को तिरछा करते हैं और इसे घुमाते हैं
पहले home चुनें context menu के लिए right click करें और position and size चुनें
position and size dialog box दिखता है
position and size टैब पर click करें
size में width और height दोनों क्षेत्रों में value 3 प्रविष्ट करें
फिर rotation टैब पर click करें
angle क्षेत्र में value 10 प्रविष्ट करें
अंततः slant corner and radius टैब चुनें
slant angle क्षेत्र में 5 degrees प्रविष्ट करें
ok पर click करें
हमने घर को फिर से डिज़ाइन कर दिया है
इस tutorial को रोकें और यह नियत कार्य करें
#drawing tool bar प्रयोग करके विविध आकृतियाँ बनाएं
जाँचें यदि आप सभी आकृतियों पर corner radius लागू कर सकते हैं
अब अब कुछ objects के दायें किनारों को समान अंतराल देते हैं
हम इसको प्राप्त करने के लिए distribution विकल्प प्रयोग करेंगे
distribution विकल्प प्रयोग करने के लिए हमें कम से कम तीन objects चुनने ज़रूरी हैं
पहले residential complex parking lot और commercial complex चुनें
अब सारे objects को cover करते हुए select arrow को खींचकर उनका समूह बनाएं
अब right click करें और distribution चुनें
horizontal में right चुनें और ok पर click करें
objects के दायें किनारे समान रूप से वितरित किये जायेंगे
distribution विकल्प objects को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से वितरित नहीं करता है
horizontal distribution विकल्प निम्न को वितरित करता है
* दायें और बाएं किनारों को
* क्षैतिज केंद्रों को और
* objects के अंतराल को
vertical distribution विकल्प निम्न को वितरित करता है
ऊपरी और निचले किनारों को ऊर्ध्वाधर केंद्रों को और ऑब्जेक्ट्स के अंतराल को
अब इस नक़्शे के लिए अपनी खुद की line स्टाइल बनाते हैं
main menu से format चुनें और line पर click करें
line dialog box दिखता है
line styles पर click करें
line styles में three dashes and three dots विकल्प चुनें
type क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दें
number में 10 और 5 प्रविष्ट करें; length में 8%
add पर click करें my line style name प्रविष्ट करें ok पर click करें
दोबारा ok पर click करें
अब इस arrow को चुनें right click करें और line चुनें line dialog box दिखता है
line टैब पर click करें
style dropdown box पर click करें
अब यह नया स्टाइल दिखाता है जो बनाया गया था
इसे चुनें और ok पर click करें
हमने एक नयी line स्टाइल बना we है
अब school campus के बायीं तरफ एक छोटा सा stadium बनाते हैं
drawing toolbar से basic shapes पर click करें और circle चुनें
अब इसे draw page में प्रविष्ट करें
वृत्त की outline my line style के तरह की है
इसके अंदर stadium type करें
अब objects को संयुक्त करना मिलाना घटाना और प्रतिच्छेद करना सीखते हैं
objects का समूह बनाने और संयुक्त करने में क्या अंतर होता है
जब objects का समूह बनाया जाता है तो केवल कई सारे objects एक साथ रखे जाते हैं
जब objects संयुक्त होते हैं तो नया objects बनता है
हम इन विकल्पों को दिखाने के लिए तीन objects प्रयोग करेंगे
पहले draw file पर एक नया पेज जोड़ते हैं
अब drawing toolbar से एक वृत्त बनाते हैं basic shapes पर click करते हैं और circle चुनते है
draw पेज में mouse को move करते हैं और इसे नीचे खींचते हैं
अब एक दूसरा object diamond बनाते हैं
drawing toolbar से basic shapes पर click करें और diamond चुनें
cursor को draw पेज पर move करें इसे नीचे खींचें और menu bar से area style/filling drop down button चुनें और red 3 रंग चुनें
तीसरा object rectangle बनाएं और object को green 6 रंग दें
shift की को पकड़कर तीनों objects को चुनें और प्रत्येक objects पर क्लिक करें
context menu के लिए right click करें और combine पर click करें
एक नया object बन गया है
ध्यान दें कि नया object उस object का रंग लेता है जो आखिरी है और पीछे है
अब एक साथ ctrl + z कीज़ को दबाकर इस क्रिया को अन्डू करते हैं
आकृति को दोबारा चुनें और context menu के लिए right click करें
shapes चुनें और merge पर click करें
एक अन्य नयी आकृति बन गयी है
याद रखें कि इन functions के साथ आप जितना परिक्षण करेंगे उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे
हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा objects को ठीक से अलाइन करने के लिए grids guides और snap lines का प्रयोग कैसे करते हैं
आपने objects को duplicate यानि प्रतिलिपि बनाना resize करना और वितरित करना भी सीखा
हमने नयी line styles भी बनाये और सीखा कि निम्न प्रयोग करके नए objects कैसे बनाते हैं
* संयुक्त कंबाइन करना * मिलाना merge करना * घटाना subtract * प्रतिच्छेद intersect करना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
अधिक जानकारी के लिए कृपया spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद